रेड और ब ब्लैक कलर का है व्हाइट कलर से उस पर कुछ लिखा हुआ है ये बड़े आकार का है।

एक मैरिज हॉल है यहां ब्लू और येलो कलर के पर्दो से डेकोरेट किया हैगेट मेन गेट को येलो कलर की तीन छत्रियां भी लगी है।

बहुत सारे जेंट्स भी खड़े हैं एक फिरोजी कलर के कुर्ते मे लेडिज खड़ी है बड़ा-सा एक बोर्ड लगा है ब्लू कलर का----

साइड में एक पॉली बैग रखा है एक टब रखा है ब्राउन कलर का गेट है और पूरा व्हाइट कलर का पेंट है और व्हाइट कलर की टाइल्स लगे हैं।

ये एक हॉल है एक टेबल है। टेबल पे जो व्हाइट कलर के बलून लगे हैं। उसपे येलो और ब्लू कलर का केक रखा है।

एक बोर्ड भी लगा है जिसपे कुछ लिखा है साइड में एक बिल्डिंग है ग्रीन और व्हाइट कलर का पेंट है।